ऊपर बिजली के तार दिख रहे हैं और आसमान में सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक इमारत की रिपेयरिंग होती हुई दिख रही है जहां पर कई सारी बल्लियां --

नीचे ये ग्रीन कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ है और साइड में एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर एक फिश मार्केट दिखाई दे रहा है।

नीचे नदी बहती हुई नज़र आ रही है और यहां पर हरियाली छाई हुई है ऊपर आसमान मे बादल भी दिखाई दे रहे हैं।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक खूबसूरत सी झांकी दिखाई दे रही है जो फूलों से सजी हुई है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर--

इस इमेज में देखिएगा यहां पर बच्चों की कपड़ों की दुकानें दिखाई दे रहीं हैं जहां पर हैंगर में छोटे छोटे कपड़े सुंदर सुंदर --

इस इमेज में देखीयेगा यहां पर एक राउंड दिखाई दे रहा है यहां पर बच्चे फिसल रहे हैं स्लाइडर के ऊपर और कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं।

और भगवान की मूर्ति भी है मंदिर में लाइट भी जल रही है और काफी खूबसूरत सजावट की गई है।

दीवार पर शोकेस के अंदर काफी सारी डेकोरेशन की चीजे--

रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक ताजिया दिखाई दे रहा है जो फूलों से सजा हुआ है और काफी खूबसूरत लग रहा है।